एक प्लम्बर ने पाइप को रिपेयर कर रहा हैं।

और ट्रेन यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता --

यह एक मेनी कुइन है। इसे उपयोग है की अ कुछ कपड़े इस पर डाल कर --

यह एक बैंक का एटीएम है। ये लोग अ अपने अकाउंट से पैसे निकालने के लिए क्यू में खड़ा है। अ अपने एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड से।

डालकर इन लोगो को पैसा मिलता है ए टी एम में।

यह आदमी अ नर्तक है और ये न न नर्तना कर रहे है।

मांगते है या प्रे करते है उ और उन लोगो को अच्छा लगता है नमाज करने के लिए।

ए कुछ एक्सबिशन का पिक्चर है जो लोग अ नीचे खेल रहे हैं और यह पिक्चर एक बड़ा बिग से लिया गया है और मज़ा आता है ऐसे ही।

और नीली भी दिख रहा है और एक कार भी चल रहा है।

यहाँ लोग एटीएम के बाहर क्यू में खड़ा हैं। अपने पैसे को निकालने के लिए अपने एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके।

और कराटे की कम्पटीशन चल रहा है। यहाँ पर लोग अ कराटे करने के लिए और एक दुसरे से लड़ने और कप जितने के लिए --